दूर की तरफ एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और ये जो डोम का कलर है वो सीमेंट कलर का है और हाउस का जो कलर है वो वाइट कलर में हुआ है।

दिखाई दे रहा है। छोटे-छोटे हो के मंदिर का जो कलर है वो ऑरेंज में कलर है पेंडल दिखाई दे रहा है।

ये बारिस की समय का कथा हैं जहाँ पे रास्ता पूरा ख़ाली नज़र आ रहा हैं और बारिस अटक गया हैं रास्ता पूरा पानी से भर गया है और कहीं कहीं जगह पे ख़ाली हैं और दुसरी --

ये फोटो एक बड़े से म्यूजियम का अंदर वाला एरिया का फोटो है और ये जो म्यूजियम है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत सारे --

जींस पैन पहन है हाथ पे ग्लोब्स लगाया गया है और हाथ में एक मैशिंग भी--

कई-कई जगह पे बड़ा-बड़ा पेड़ भी है और कई-कई जगह पर छोटा-छोटा पेड़ नजर आ रहा है पेड़ में येलो कलर का पुष्प भी नजर आ रहे हैं।

बहुत सारा मैट्स भी रखा गया है और इक्विपमेंट्स भी रखा गया है चेस्ट प्रेस के लिए लेग प्रेस के लिए दिख रहा है और मिरर में बहुत सारा लाइट सीख रहा है।

ये फोटो एक बुक के दुकान का फोटो है जहां पे बहुत सारे बुक एक ही कलर पे नजर आ रहे हैं और बुक के ऊपर लक्ष्मी जी--